यह एक बेडरूम का दृश्य है जहां पर एक बेड लगा हुआ है।

यह एक बेडरूम का दृश्य है जहां पर एक पलंग दिखाई दे रही है।

यह एक स्टेशनरी की दुकान है जहां पर जेरोक्स और लेमिनेशन होता है।

यहां पर एक पीली कलर की बोर्ड टंगी हुई है जिसमें लाल शब्दों में लिखा हुआ है।

यहां पर एक पंडित जी भी दिखाई दे रहे हैं।

नीचे में बहुत सारे कलर्स भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह स्कूल बहोत ही बड़ा है इस स्कूल के पोस्टर के ऊपर काली कलर की टंकी रखी हुई है।

सारे फूलों को भूरे कलर के गमले में रखा गया है।

और इस बोर्ड पर आवश्यक सूचना लिखी हुई है जो बांस के सहारे--

इसकी चोंच लाल दिख रही है और आंखें काली है।

और यहां पर घासों का मैदान भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे पंखे दिख रहे हैं।

यहां पर एक घंटा घर भी हैं जहां बड़ी सी घड़ी दीख रही हैं।

यह एक छत का दृश्य है जहां पर बहुत सारे लंबे लंबे रड दिख रहे हैं।

उनके टेबल पे गोंद गिफ्ट बोतल और भी बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं।

यह एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है जिसकी दीवाले सफेद कलर की है।

यह किसी डैम का दृश्य है यहां की रेलिंग की पूले रंग-बिरंगी दिख रही है।

नीचे में पानी दिखाई दे रहा है।

इसके दोनों हाथ जेब में है और वह खड़ा है।

एक बड़ा सा अपार्टमेंट का दृश्य है।

यहां पर एक आदमी कुर्सी पर पीली शर्ट पहनकर बैठा हुआ--

यहां पे बम पटाखे उड़ रहे हैं और चिंगारियां भी उठाती--

यह एक मस्जिद का दृश्य है जिसकी मुख्य दीवार हरे रंग की है।

यह एक मस्जिद का दृश्य है।

बगल में एक शटर में टेलर बैठता है।

जहां बहुत भीड़ है और उस थ्रेड्स की दुकान में रंग बिरंगी साड़ियां टंगी हुई है।

अंदर में एक फ्रिज दिखाई दे रही है प्लास्टिक के पर्दो को इंटा से जाता गया--